कंस्ट्रक्शन एरिया दिख रहा है यहां पर लोग--

जैसे कोई शोरूम बन रहा हो।

यह साइड में जंगल है और मालगाड़ी खड़ी हुई है।

ओ यहां पर बहोत सी ल गाड़ियां भी खड़ी हुई है।